कार्तिके हनुमान जी एक व्यक्ति जो गायक गायक माइक में गाना गा रहा है दो व्यक्ति बैठे हुए हैं ऊपर लाइट है पीछे का कलर ब्लू है पहाड़ बने हुए --

चित्र में हमें कुछ बच्चियाँ दिखाई दे रही है जो की कुछ सीख रही है एक जो की उनको देख रही हैं पीछे दीवाल का कलर वाइट और रेड है।

खड़े बैठे हुए है जो आर्ट एंड क्राफ्ट सिख रहे है स्कूल का कलर वाइट रेड और पर्पल है।